बहुत बड़ा एक सांप नजर आ रहा है जो ब्लैक कलर का है और एक गोल्डन कलर का है।

लाइटें लगी हुई हैं सामने कांच लगे हुए हैं नीचे की--

नीचे की जमीन दिखाई दे रही है।

बहोत सारे पेढ लगे हुए है आसमान दिखाई दे रहा है जो हल्का आसमानी कलर का है।

एक गोल मेहराब दिखाई दे रहा है उसके अंदर बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं बीच में एक मूर्ति खड़ी हुई है।

और भी बहुत सारा सामान लटका हुआ है।

सनबॉर्न क्लब दिखाई दे रहा है।

लिखा हुआ है एक घर है उसपे बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं जो लाल कलर के हैं और पीले कलर के हैं।

फ्लावर पॉट में बहुत सारे फ्लावर रखे हैं रंग बरंगे रेड येलो वाइट ग्रीन --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

पानी के फुवारे नजर आ रहे हैं बहुत सारे गमले रखे हुए हैं।

बहोत सारी लाइटे लगी हुई है पी_ओ_पी हुई हुई है।

नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

सामान की एक दुकान दिखाई दे रही है उस पे बहुत सारे पैकेट्स लटके हुए हैं।

खंबे लगे हुए हैं। उनपे वायर लगे हुए है।

जमीन दिखाई दे रही है जिस पे बहोत सारी घास बनी हुई है बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

जमीन दिखाई दे रही है एक घर दिखाई दे रहा है जो क्रीम कलर का है बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही हैं।

जवाहर होस्टल का एक पोस्टर लगा हुआ है बड़ा वाला उसके ऊपर लाइट लगी हुई है।

अंदर टेबल कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

एक लड़की खड़ी है उसके हाथ में आइसक्रीम हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं आइसक्रीम खा रहे हैं।

नीचे एक ट्रक खड़ा हुआ है।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

डांस कर रही हैं एक लड़की लाल कलर के कपड़े पहनी है एक पिंक कलर के कुछ साड़ियाँ पहनी हुई हैं।